काफी सारी लाइटों का यूज़ किया गया है। एक सुन्दर-सा पंखा टंगा हुआ है।

जिस पे दो तीन लोग आराम से सो सकते हैं। जिस पर माइका लगा हुआ है। बीच में एक पटी पड़ी हुई है।